यहाँ पर एक कॉलेज की इमारत बनी हुई है इमारत लाल रंग की है।

यहाँ पर बोहत सारी खिड़िकयाँ बनी हुई है।

यहाँ पर एक कॉलेज है। कॉलेज के बाहर रेता पड़ी हुई है।

यहाँ पर पूरे में टीन लगी हुई है।

यहाँ पर एक काले रंग की प्लेट है प्लेट में प्याज रही हुई है प्लेट मे नीबू भी है।

यहाँ पर नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एक एरो बना हुआ है।

यहाँ पर एक ऑफिस है। ऑफिस में पंखा लगा हुआ है।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

यहाँ पर एक मेंस ब्यूटी पार्लर है।